इसके साइड में कुछ ये भी है ग्रीन कलर का ग्रास भी है।

इसीलिए वहां पे बहुत अच्छा दूर दूर तक ये समुद्र दिख रहा है।

जिसमें कोई भी इंसान नहीं है इसमें ये लॉकर बेचते हैं।

गेट का कलर ब्लैक है और ग्रीन डेकोरेशन की गई है।

ग्राउंड एक है जिसमे लाइट्स वगैरह बहुत कुछ लगाए गए हैं।

इनके साइड्स में बहुत बड़े पेड़ भी है।

का क्रीम कलर है और वहां पे विंडोज भी है जिनका कलर ब्राउन है।

जो ये बंद है गोल्डन है और इसके ऊपर एक बोर्ड भी लगाया गया है।

ये एक टेंट के नीचे है इसके ऊपर एक टेंट दिया गया है।

ब्लैक कलर की और यहाँ कि भी सिल्वर कलर की चेयर्स है और एक डस्टबिन भी है।

पे लिखा गया है हीरो होंडा मोबाइल नंबर भी दिगा दिया गया।

उसके सामने बहुत सारे पेड़ है जो ग्रीन कलर के--

इसका नाम के_जी_एन है और वहां पे एक आदमी है जो कंप्यूटर पे अपना काम कर रहा है।

एक दुकान है जिसमें बहोत सारे पतले और मटके रखे गए है जिनका कलर ब्राउन है।

कंप्यूटर लैब है जिसमें बहोत सारे बलूंस लगाए गए हैं रेड और येलो के--

इस में ब्लैक येल्लो वाइट के बलूंस लगाए गए है।

ये एक कार है जो थोड़ा सा क्रीम कलर गोल्डन कलर की है।

ये एक बहोत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे से सजाया गया एक ग्राउंड है।

दूसरा मोबाइल नम्बर दिया गया है और हिन्दी से भी कुछ लिखा गया है।

वहां पे कुछ ए_सी भी लगाए गए हैं।

लाइटनिंग भी बहुत अच्छी ही जल रही है और ये शाम का बखत है।

पास इनके वाइट वगैरह है।